एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है जिसने ग्रीन कलर की जैकेट पेहनी है और ग्रीन कलर का हेलमेट लगा --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

बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। पथर के ऊपर एक सूखा लकड़ी पड़ी हुई है। ऊपर--